कुछ लोग कुछ परफॉर्म कर रहे हैं अह शादी है एक्चुअली क्योंकि--

सामने किसी प्लेग्राउंड की फोटो दी गई है।

सामने जिम की फोटो है जिसपे लिखा हुआ है विश फिर इट वर्क फॉर --

सामने दी गयी पिक्चर में कुछ ग्रीनरी है कुछ--

ग्रीन अ ग्रीन कलर है स हर साइड से सब्ज़ा ही सब्ज़ा दिख रहा है।

वन टू थ्री फोर ट्रैक्टर्स हैं किसान हैं जो किसी--

हमारे लिए रोशन बनाते हैं और खुद का पालन पोषण भी--

सामने दी गई पिक्चर पे किसी केमिस्ट की फोटो है जहाँ पे--

हॉस्पिटल की एंबुलेंस की वैसे आज तो चप्पे-चप्पे पे हॉस्पिटल है।

यहां कंप्यूटर पे बैठे हुए है इधर बहोत सारी कंप्यूटर है एक--

वेल सेटल्ड ऑफिस लग रहा है जैसे अपने अपने काम में हर एक मजे में बिजी है।

लेकिन अ फिर भी अ ये लोग शायद--

सामने फोटो पे कुछ किसी अच्छे से रिसेप्शन का--

सातना कर रहे हैं अ अ कुछ--

हिंदू लोगों का अपना है मुस्लिम लोगों का अपना है अपनी श्रद्धा है इनकी--

उम ऐसे लोग नहा रहे हैं ठंडा पानी आ रहा है कि वाटरफॉल है तो--

जिसमें कुछ वाटर गेम्स भी है जैसे उधर से चढ़ो तो इधर से सु करके पानी में चले जाओ।

सामने किसी स्कूल या किसी ऑफिस की फोटो देखे हैं वाइट कलर की बिल्डिंग है।

तो ओ सामने बड़ा सा ग्राउंड है साइकिल वाले है एंड --

हॉल ऐसा कुछ है तो ओ समझ नहीं आ रही है कोई-कोई पिक्चर अच्छे से।

सामने एक वाटरफॉल है अ--

हम्म और कुछ वो बॉल्स जैसे बल्ब्स हैं जो खूबसूरत हैं।

हाँ जी क्योंकि ये मगरमच्छ ना अभी धूप सेकने के लिए पानी से बाहर आया हुआ है लेकिन होगी उफ़ लोगों को चाहिए कि इससे--

आह वैसे इनलोगों की वजह से सभी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में न बहोत ही सूहलयतें पैदा हो गयी।